फूलों की खेती की गई है और एक दो अलग अलग--

यहां पर अलग अलग प्रकार के कपड़े मिलते हैं

यह फूलों से भरी हुई दुकान हैं यहां पर कई प्रकार के फूलों--

और यहां पर बड़े बड़े पत्थर भी हैं।

पेड़ पौधे उगाए जाते हैं कुछ गमले में भी--

यह एक नहर है यहां पर --

और यहां पर दो फैंस नहा भी रहे हैं।

रोड के दीवार के साथ बहोत सुंदर लग रहें हैं।

यहां पर कई प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं।